पेट्रोल टांका जो छत है वो ब्लू येलो कलर और व्हाइट कलर में है।

यहां पे एक मास्टर जी है और एक स्टूल पड़ा है।

एक रेड कलर की स्कूटी है एक सिल्वर कलर की है।

वो हैं और यहां पे कुछ पत्थर पड़े है पुराने से --

यहां पे बहुत सारी मूर्ति है जैसे शिव पार्वती गनेश कार्तिकेय हनुमान जी।

ग्रे कलर में कुर्सी पड़ी है येलो कलर के तीन चार शटर हैं।

एक पंखा लगा हुआ है एक वाइट कलर का कूलर है लोटा है।

आसपास काफी सारे पेड़ है खजूर के हैं जैसे की और भी पेड़ है और आसपास घर भी हैं।